यहां पर बहोत सारी घास का मैदान है

यहां पर एक बिल्डिंग और नजर आ रही है।

नीले कलर की शर्ट पहनी हुई है।

बिल्डिंग में ए_सी भी लगी हुई है।

साथी बहोत सारी गाड़ियां भी यहां पर पार्क की गई--